और दो पीला बॉल्स बड़े-बड़े रखे हुए हैं यहाँ पे।

यहाँ सामने में फर्श दिखाई दे रहा है व्हाइट और ब्लैक कलर में।